ऊपर एक जिओ का बोर्ड लगा हुआ है।

एक महिला खड़ी हुई है जिसने बच्चा उठा रखा है।

एक बल्ब भी लगा हुआ--

और मच्छियों के पास बोहोत सारा बरफ रखा हुआ है।

टाइल के टुकड़े भी पड़े हुए हैं।

और इनके साइड में छोटे बच्चों के कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं।

रूम में एक बल्ब लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे हिरन हैं।

और इसके साइड में बहोत सारी ईंटें पड़ी हु--

सबके हाथ में एक किताब है।

छत में एक पंखा लगा हुआ है।

पीछे एक माइक लगा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर फलों की दुकान है।

और दीवार पर पंखा भी लगा है।

इसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

पिचले डिब्बों पे वन प्वाइंट फाइव लिखा हुआ है।

यह एक फ्रिज की दुकान है।

जिसके अंदर बोहोत सारी जिसके अंदर मेजें कुर्सियां मूर्ति रखी हुई हैं।

और इसकी दीवार पे एक बोर्ड भी चिपका हुआ है।

और इसके किनारे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और साइड में एक स्कूल भी है जिसमें कुछ शीशे लगे हुए हैं।

और साइड में कुछ गुब्बारे भी लगे हुए--

जिसकी साइड में एक भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

और यहां बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है जिसमें बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जिसके साइड में एक कुर्सी रखी हुई है।

और गेट के पास कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और साइड में एक कार खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है।